ऊपर ब्लैक कलर की रेलिंग लगी हुई है सुल सुलभ शौचालय का नाम लिखा हुआ हैं।

ग्रिल सफ़ेद और ऑरेंज कलर की है एक आदमी खड़ा हुआ है पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है एक टिन का शेड लगा हैं ।

एक लड़का बैठा हुआ है उसने ग्रीन कलर की टी_शर्ट पहनी है सर पे कपड़ा बाँधा हुआ हैं।

स्टेशन की गेट पर हरी बोर्ड लगी है जिसपे स्टेशन का नाम लिखा है आस -पास छोटे -छोटे पेड़ हैं ।

बगल में एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है सामने एक और बाल्टी रखी हैं।

एक चर्च है चर्च में एक फादर बैठे हुए है।

एक स्टैंड बना हुआ है जिस पे मोटर रखी है।

एक हाथ में चक्र रखा हुआ है दूसरे हाथ में शंख रखा है।

पीछे रेलिंग बनी हुई है बड़े-बड़े खजूर के पेड़ लगे हैं ।

ऊपर दो ट्यूबलाइट जल रही है साइड की दीवार पर बोहोत सारी फोटो फ्रेम्स लगी हैं।

आस-पास छोटे-छोटे पेड़ बन लगे हुए है बहुत सारा कचडा़ पड़ा हुआ हैं ।

पंखे लगे हुए है बीच-बीच में स्टार्स बने हुए है।

भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई है बोहत बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं ।

एक बैंक है बैंक का ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हैं ।

जो बंद है एक चैनल गेट खुला है बाहर दो साइकिल खड़ी हुई है।

एक लंबा -सा पाइप लगा हुआ है साइड में दो खिड़कियाँ दिख रही है एक बहोत बड़े-बड़े पेड़ हैं ।

को लाल कलर के गुलाब है गुलाबों के ऊपर सफ़ेद कलर का कुछ छिड़का हुआ हैं ।

गुलाबों में बहुत सारे हरे कलर की पत्तियाँ लगी हुई है।

डिजाइनें लाइन से बनायीं गयी है।

कार का इंजन दिख रहा है अंकल ने नीली टी_शर्ट पहनी है।